इसमें एक आदमी च छौंक रहा है।

इस पिक्चर में एक बड़ी सी बिल्डिंग का--

पर ये मिस्त्री डोलाराम पाड़ा चौक के सामने--

इस पिक्चर में बहोत सारी डोर मैट्स है जिन्हें लेयर बाय लेयर एक ग्रीन टेबल के ऊपर रखा गया है।

और चारों साइड थोड़ी पुरानी घर हैं और कुछ दुकान है पुरानी।

और एक आदमी येलो कलर का शर्ट पेहनके इधर पेट्रोल पंप की ओर आ रहा है।